कपड़े पहने हुए है कुछ सामने औरत और एक आदमी खड़ा हुआ है और कुछ लोग खड़े हुए है जिन्होंने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है जमींन का रंग चॉकलेटी कलर का लाल कलर--

ऊपर ऊपर पाइप लगे हुए है न गैस के और न छत का रंग सफेद है न जमीन पर चोक्लेटी कलर का फर्श डला हुआ है।

फिर गार्डन में-में मिट्टी डली हुई है और उसमे घास लगा हुआ है कुछ उधर की साइड में कुछ पेड़ लगे हुए है सड़क पर चमक रही है सड़क से ले कर इ रंग--

--मे एक गेट लगा हुआ है जो पीले कलर का एक खंबा बना हुआ है।

आई तिलक कर के मुँह पे सर लाल कलर की साड़ी पहने कुछ पहनी है नीले कलर की और उसके पीछे थी क्रीम कलर की साड़ी --